यह बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ गाड़ी सब लगा हुआ है। बहुत बड़ा सब बिल्डिंग सब है। देखने में अच्छा लग रहा--

एक औरत बेच रही है। एक जेंट्स बगल में एक लड़का मास्क लगा हुआ खड़ा है।

गाछ-वृक्ष सब लगा हुआ है।